लिबर ऑफिस calc में फ़ॉर्मूला और functions पर spoken tutorial में आपका स्वगात है
इस tutorial में हम in बारे में सीखेंगे: conditional operator if or statement basic statistic functions संख्याओं का पूर्णन
यहाँ हम अपने operating system के लिए उबंटू लिनक्स version 1004 और लिबर ऑफिस suite वर्ज़न 334 इस्तेमाल कर रहे हैं
हम basic arithmetic operators लागू करना जैसे जोड़ना घटाना और data का औसत निकालना पहले ही सीख चुके हैं
अब कुछ और लाभदायक operators के बारे में सीखते हैं
एक बहुत ही सामान्यतः इस्तेमाल किये जाने वाला operator है conditional operator
conditional operators उपयोगकर्ता द्वारा data पर लागू condition को जाँचते हैं
और फिर उत्तर boolean में प्रदर्शित करता हैसही या गलत
personalfinancetracker ods खोलते हैं
यहाँ cost शीर्षक के नीचे हमने कई सारी वस्तुओं की कीमत को सूचीबद्ध किया है
इन पर conditional operators लागू करें और उत्तर का विश्लेषण करें
b10 से उल्लिखित cell पर click करें और इसके अंदर condition result type करें
अब c10 से उल्लिखित cell पर click करें
conditions का उत्तर इस cell में लागू होगा और प्रदर्शित होगा
ध्यान दें house rent का खर्च 6000 रुपया है
electricity bill का खर्च 800 रुपया है
house rent का खर्च electricity bill से अधिक है
हम इन पर विभिन्न conditions को लागू कर सकते हैं और उत्तर जाँच सकते हैं
c10 से उल्लिखित cell पर click करें
इस cell में पहली condition type करें is equal to c3 greater than c4 और enter बटन दबाएँ
चूँकि cell c3 की value cell c4 से अधिक है उत्तर हम true पायेंगे
अब इस conditional statement को is equal to c3 less than c4 में बदल देते हैं
enter दबाएँ
हमें उत्तर false मिलता है
इसी प्रकार से आप अन्य conditional statements को लागू कर सकते हैं और उत्तर जाँच सकते हैं
यह statements बहुत ही लाभदायक होते हैं जब ढेर सारे data के साथ कार्य कर रहे हों
कंडिशन के अनुसार जो सही है वो उत्तर प्रिंट करवाने के लिए आप डेटा पर if और or कंडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं
c10 उल्लिखित cell पर click करें और type करें
is equal to if और कोष्टकों के अंदर c3 greater than c4 comma दोहरे उद्धरण चिह्नों के अंदर positive comma और फिर से दोहरे उद्धरण चिह्नों के अंदर negative
इसका मतलब यदि cell c3 की value cell c4 से अधिक है तो positive प्रदर्शित होगा
या अन्यथा negative प्रदर्शित होगा
अब enter दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर positive है क्योंकि रूपये 6000 रूपये 800 से अधिक हैं
अब conditional statement में चलिए greater than को less than में बदलते हैं और enter की दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर अब negative है क्योंकि cell c3 की value cell c4 की वैल्य से अधिक है
यदि हम cells c3 और c4 का data बदलें तो आप बदलाव को उत्तर में भी देख सकते हैं
उत्तर अब negative प्रदर्शित होता है
अब cell c4 की value की 7000 तक बढ़ा दें और enter की दबाएँ
उत्तर खुद ही positive में बदल जाता है
फिर से cell c4 की value को 800 तक घटाएँ
और enter की दबाएँ
उत्तर फिर से खुद negative में बदल जाता है
अब बदलावों को डिलीट करते हैं
आगे कुछ arithmetic और statistic functions सीखते हैं
basic arithmetic functions सम्मिलित करते हैं जोड़ने के लिए sum गुणा के लिए product भाग के लिए quotient और कई सारे जिन्हें हमने पिछले tutorials में पहले ही सीख लिया है
अब sum product और quotient functions कैसे sum करते हैं यह जाँचने के लिए कुछ operations करते हैं
सबसे पहले sheet 3 चुनें
b1 b2 और b3 से उल्लिखित सेलों के अंदर 50 100 और 150 की संख्या क्रमशः प्रविष्ट करें
cell a4 पर click करें और sum type करें
cell b4 पर click करें
हम इस cell में उत्तर की गणना करेंगे
is equal to sum और कोष्ठकों के अंदर b1 comma b2 comma b3 type करें
enter दबाएँ
ध्यान दें उत्तर 300 दर्शा रहा है
आप इसी प्रकार से cells के विभिन्न प्रकार भी प्रविष्ट कर सकते हैं
b4 पर फिर से click करें
अब कोष्ठकों के अंदर b1 comma b2 comma b3 के बजाय b1 colon b3 type करें
enter दबाएँ
फिर से उत्तर 300 प्रदर्शित होता है
अब cell a5 पर click करें और product type करें
cell b5 पर click करें
यहाँ is equal to product और कोष्ठकों के अंदर b1 colon b3 type करें
enter दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर 750000 प्रदर्शित होता है
अब देखते हैं कि quotient कैसे काम करता है
a6 से उल्लिखित cell पर click करें और quotient type करें
अब cell b6 पर click करें
हम उत्तर की गणना करने के लिए इस cell का उपयोग करेंगे
और is equal to quotient और कोष्टकों के अंदर b2 comma b1 type करें
enter दबाएँ
आपको उत्तर 2 मिलेगा ऐसा इसलिए क्योंकि 100 भाग 50 2 देता है
इसी तरह calc में हम कई प्रकार के arithmetic operations कर सकते हैं
अब सीखते हैं कि statistic functions का कार्यान्वन कैसे करें
statistical functions spreadsheets में data विश्लेषण के लिए लाभदायक होते हैं उदाहरणस्वरुप functions जैसे count min max median mode और भी बहुतों का प्रकार statistical होता है
सबसे पहले sheet 1 पर click करें
देखते हैं कि कैसे statistical functions का इस्तेमाल करके न्यूनतम अधिकतम और मध्य मूल पता करते हैं
c10 उल्लिखित cell पर click करें जहाँ हम उत्तर दर्शाएँगे
cost शीर्षक के अंदर हमारे पास बहुत कम प्रविष्टियाँ हैं
न्यूनतम कीमत 300 रूपये है
अधिकतम कीमत 6000 रूपये है
यह उत्तर हैं जो कि प्रदर्शित होने चाहिए जब हम उनके functions इस्तेमाल करते हैं
cell c10 में is equal to max और कोष्ठकों के अंदर c3 colon c7 type करें
अब enter की दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर 6000 है जोकि column में अधिकतम value है
अब statement में शब्द max को min से बदलें
और enter की दबाएँ
ध्यान दें कि उत्तर 300 है जोकि cost column में न्यूनतम वैल्यू है
मध्य value निकलने के लिए शब्द min को median से बदलें
और enter की दबाएँ
उत्तर 800 प्रदर्शित होता है जोकि column में मध्य कीमत है
इसी प्रकार से आप data पर अन्य statistical functions इस्तेमाल कर सकते हैं और तदनुसार विश्लेषण कर सकते हैं
इस cell में बदलावों को डिलीट करें
अब सीखते हैं कि संख्याओं का पूर्णन कैसे करें
cost शीर्षक के अंदर कुछ बदलाव करते हैं
हम 6000 को 6004 6000 को 6004 300 को 3003 में बदलेंगे
अब b11 उल्लिखित cell पर click करें शीर्षक rounding off type करें
c11 उल्लिखित cell पर click करें जहाँ हम शीर्षक cost के अंदर की चीज़ों का जोड़ निकालेंगे
cell c11 में is equal to sum और कोष्ठकों के अंदर c3 colon c7 type करें
अब enter की दबाएँ
ध्यान दें कि कुल मिलाकर 970104 है
अब मान लीजिये हम हमारे उत्तर में कोई भी दशमलव स्थान नहीं देखना चाहते
कुल संख्या 970104 वाले cell पर click करें
type करें is equal to round कोष्ठक खोलें sum और फिर से कोष्ठकों के अंदर c3 colon c7
कोष्ठक बंद करें enter की दबाएँ
आप देखते हैं कि उत्तर अब 9701 है जोकि 970104 के नजदीकी पूर्ण संख्या के आसपास है
rounding off निचली पूर्ण संख्या या तो ऊपरी पूर्ण संख्या पर कर सकते हैं
उत्तर के साथ cell पर click करें और शब्द round को बदल कर roundup करें
अब enter की दबाएँ
आप देखते हैं कि उत्तर अब 9702 जोकि ऊपरी पूर्ण संख्या है
निचली पूर्ण संख्या पर round off करने के लिए roundup शब्द को rounddown में बदलें
और enter की दबाएँ
उत्तर अब 9701 है जोकि निचली पूर्ण संख्या है
अपनी personalfinancetracker ods को उसके असली रूप में पाने के लिए इन बदलावों को अन्डू करें
इसी के साथ हम लिबर ऑफिस calc पर इस spoken tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षेप में हमने इनके बारे में सीखा: conditional operator conditional operator if or statement if or statement basic statistic functions संख्याओं का पूर्णन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
spoken tutorial project team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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर संपर्क करें